और ये देखने में लग रहा है की हम कुछ नाई-वाई का काम होता है और यहां कुछ स्विच है। और नाले

दो कुछ कटोरी टाइप के है और दो कुछ बैंगन लौकी की तरह और दो और दो --